ये कहीं का जगह है। जो भी जगह हो बहुत अच्छा जगह है। यहाँ लोग बैठे है।

बहुत बड़ा नदी है। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ कई लोग भी है इसमें।

बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ रोड लाइ यहाँ लाइट इट भी लगा है और किनारे किनारे गेट जैसे लगा है।

ये दुकान है। दुकान में बहुत सारा सामान रखा गया है। यहाँ सेब भी रखा गया है केला भी रखा गया है कीवी भी रखा गया है और संतरा भी रखा गया है अनार भी रखा गया है। बहुत सुंदर ये दुकान है। यहाँ बाल्टियाँ भी रखी गई है।

बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छा दुकान है। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत ही अच्छा दुकान है। बहुत बड़ा दुकान है। बहुत सारे पेंट रखा गया है। बल बहुत सारे पेंट का डब्बा भी र --

कल का स्कूल है। यहाँ लडकियाँ दिख रही हैं सब। यहाँ लडकियाँ डांस कर रही हैं। बहोत अच्छा जगह लग रहा है। बहोत सुंदर जगा है देखने में बहोत सुंदर है। लडकियाँ डांस कर रही हैं। बहोत अच्छा लग रहा है लाइट भी जल रहा है पंखा भी है।